इस फोटो में एक फील्ड दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल कुद रहे हैं।

जो वाइट कलर के है और ऊपर से येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है।

बगल में ब्लू कलर का शटर भी लगा हुआ है और उसके बगल में एक घर है और ब्लू कलर का ग्रिल लगा हुआ है और बाहर में एक टेंपू खड़ा --

और एक बाउंड्री दिया हुआ है।

बाहर में एक पीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

बाउंड्री के अंदर एक ट्रक लगा हुआ है और एक केला का पेड़ भी है।

उस आदमी ने हरे कलर का कोट पहना हुआ है।

दीवाल का रंग ब्लू और वाइट है।

इस फोटो में हमें एक हॉल दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर एक बहोत बड़ा पुल है।

जिस पर एक बच्चा बैठा हुआ है और कोई उसे बैठ रहा है।

उन्होंने रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है।

करकट के नीचे तीन रॉड लगी हुई है।

आदमी के पीछे एक अलमीरा है।

बहोत सारे पेड़ पौधे और घास फूस भी दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा सा पोल भी दिख रहा है।

सोफे पर दो आदमी बैठे हैं।

यह बोतल्स रंग बिरंगे है।

चारों तरफ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है और बहोत सारी बड़ी-बड़ी पहाड़ियां भी है।

यहां पर एक पीला कलर का बिल्डिंग दिख रहा है जिसके बाहर बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है।

दुकान के बाहर एक फोल्डिंग भी रखा हुआ है और एक सोलर भी रखा हुआ है।